यह एक फल का ठेला है आम पपीता सेब केले तरबूज अनार आम आदी मिलते हैं शरीर के लिए फल बहुत --

करेले टिंडे हरी सब्जियाँ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हरी सब्जियाँ खाने से शरीर मजबूत होता है टमाटर खाने से खून बढ़ता है सब्जी का बगीचा लगाने में बहुत मेहनत लगती है।